मुझे बहोत सुन्दर लग रहा है गंगा किनारे जैसा।

सुन्दर है देख सकते है आपलोग भी हम तो देख ही रहे है।

मत पूछिए बहोत सुन्दर हैदेख---

यहाँ पे देख सकते है इतना अच्छा कोचिंग खोला हैं।

चलिए जो भी है बहुत अच्छा लग रहा है बहुत बढ़िया भीड़-भाड़ --

अंदर भी तूफ़ान इधर भी तूफान।

जो भी होगा मतलब सोने के लिए तो --

ये सीढ़ी का क्वॉलिटी देखेगा आदमी तो--

सब कोई कहेगा की ये सीढ़ी भी क्या --

कि आप लोग तो तारीफ इतना करुँगी।

ये चल रहा है लेकिन है यार इतना अच्छा है कि मत --

ऐसा तो है नहीं कि स्लीपर नहीं है बहुत अच्छा स्लीपर है।

और ए .टी .एम. भी है तो समझ जाइए।

खाते है बहुत अच्छा लगता है और --

और ए ऊधर से एक ड्राप दिख रहा है।

आपलोग भी हम भी देख रहे है बहुत --